लड़कियाँ एंड बॉयस हैं अ हम्म काफी सारे झूले हैं इसमें अर --

ये एक पहाड़ सी जगह है जहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

आदमी ने जैक डायमंड की जैकेट पेहेनी हुई है ब्लू कलर की इस ने जीन्स डाल रखी है जूते डाल रखी है उसने येलो कलर के ।

अ तीन चार पाँच छे काफी सारी टी.बी. स हैं यहाँ पे।

आदमी फ़ोन देख रहा है और काफी सारे कपड़े यहाँ पे आ टंगे हुए है काफी सारे कपड़े यहाँ पे पैकेट्स में बंद कर रखे है ।

ये एक अ स्कूल अ इमेजस हैं जिसमें काफी अ सारे बच्चे टेबल्स के ऊपर अ पढ़ कुर्सी में पढ़ रहे हैं।